यह एक झील का दृश्य है।

यहां पे दो टेंपो भी लगे हुए हैं एक ग्रीन और एक पीला कलर का एक लाल कलर का टेंपो है।

आइसक्रीम भी रखा हुआ है और यहां बहुत सारे मिक्सर रखे हुए हैं।

चीनी और दाल भी रखा हुआ है तथा यहां पे एक बिस्किट भी है।

यहां पे ब्लैक कलर का एक चेयर भी दिख रहा है और एक हेलमेट भी दिख रहा है।

ग्रीन कलर का कालीन भी बिछा हुआ है।

यह एक साइकल दुकान का दृश्य है जहां पे बहुत सारा साइकिल रखा हुआ है।

यह एक गार्डन का दृश्य है जहां पर बहुत ज्यादा घास फूस लगे हुए हैं ।

एक पेड़ कटा हुआ है उसके ऊपर ब्लैक कलर का तार बिछा हुआ है।

जहां पे एक वाइट कलर का कैमरा लगा हुआ है।

यहां पे बहोत सारे पंखे भी लगे हुए हैं अतः दो चेयर भी लगे हुए हैं व्हाइट और ब्लू कलर का।

यह एक नदी का दृश्य है जहां पे बहुत ज्यादा पानी दिख रहा है।

पानी कलर ब्राउन है जिसके ऊपर बहोत जादा पहाड़ दिख रहे हैं।

यहां पे एक एल_ई_डी टी_वी भी लगा हुआ है और एक जे_पी_एस का पानी भी रखा हुआ है।

यहां पे एक लाइट भी है वाइट में और उसके ऊपर दो पंखे लगे हुए हैं।

ग्रीन कलर का साइकल हर एक वाइट कलर का एक लाल कलर का साइकल है।

यह एक बुक दुकान का बाहर का दृश्य है जहां पे दो गाड़ी लगा हुआ है।

एक बच्चा भी कुर्सी पे बैठा हुआ है।

यहां पे बहुत बड़ा मंदिर दिख रहा है और मंदिर के ऊपर बहुत सारे झंडे लगे हुए हैं रेड व्हाइट ग्रीन कलर का।

पानी के कलर ग्रीन और वाइट है।

एक कीपर बैटमैन ब्लू कलर का शर्ट पहने पीला कलर का जर्सी पहने खड़ा है हाथ में ब्लैक कलर का ग्लब्स पहना है।

एक बोर्ड में शर्मा ऑडियो लिखा हुआ है उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का तार लगा हुआ है।

यहां पे दो घर भी दिख रहे हैं एक घर में लाइट चल रहा है और एक घर पीला कलर का --

आर में एक ब्लू कलर का करकट लगा हुआ है।

के ऊपर बहुत सारे पंखा और लाइट लगे हुए हैं।

घर का अंदर एक कुर्सी भी दिख रहा है और दो लाइट भी दिख रहा है ।

उसके नीचे एक वाइट कलर का बोड़ा रखा हुआ है और पिला कलर का तिरपाल से छत दिया हुआ है।